इस पिक्चर में दिखाया गया है एक लड़का अपनी भैंसों को पानी में नुहाने आया हुआ है इसमें।

जोकि इसने लिली पैंट पहन रखी है।

इस पिक्चर मे दिखाया गया है की होली के टाइम ये लोग होली खेल के आ चुके है। सारे हरे पीले लाल गुलाबी हो रखे है।

इस पिक्चर में दिखाया गया हैं कि एक बाज़ हैं जो की बनावटी हैं।

एंड लेफ्ट साइड पैर के साइड खड़ा हुआ है येलो टी शर्ट पहेन के --

कुछ बातचीत चल रही है उनकी।

और पूरा एक ये रूम पैक है।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

और ये कार्डबोर्ड भी नीचे रखा हुआ है।

इसमे कार ए_सी ये वगेरा सर्विस की जाती है सावन की ये वर्कशॉप है।

कुछ लोग इधर उधर चल रहे हैं कुछ फील्ड में खड़े हुए--

इस पिक्चर में तीन ग्लास रखे हुए हैं एक में तो काले रंग के कुछ पेन रखे हुए हैं।